जिसका नाम है श्री है आगे का नही दिख रहा और यहां पे फैंसी झाड़ भी लगाए हुए हैं।

खाने के आइटम है यहां पे मिठाई में है आइसक्रीम है और यहां पे केक है आइस केक है।

यहां पे एक दुकान है और एक शटर हैं यहां पे सीढ़ियां पे हैं जो ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है और यहां पे दो कुर्सियां हैं जो--

और यहां पे बैकग्राउंड का रीमिंग जो इसके अन्दर स्लेप्ट का सीमेंट वगैरा भर सकते हैं।

यहां पे है टू व्हीलर थरवे और साइकिल भी ठहरे हुए पिंक कलर की बिल्डिंग है धूप नजर आ रही है खेत है जो येलो नजर आ रहा है खेत--

जो यहां पे समंदर से लाकर यहां पे कैरी बैग में है जो सेम प्रकार के झींगे हैं।

और यहां पे नीचे अलमारी है छोटी सी और यहां पे है अह और यहां पे है।